एटीएम की एक दीवार पर नीला और एक दीवार पर सफेद रंग का पेंट हुआ है दिखाई दे रहा है एटीएम के अंदर दो ऐसी भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ट्रक के साइड मे काफी सारी बोरियाँ रखी हुई दिखाई दे रही है कुछ बोरियाँ सफेद है तो कुछ बोरियाँ पीली भी दिखाई दे रही है।

यहां अलमारी के ऊपर काफ़ी सारे पेन पेंसिल टागें दिखाई दे रहे है यहां अलमारी का अन्य भाग भी पड़ा हुआ है।

यहाँ काफी सारी मछलियों को काटते हुए दिखाया जा रहा है यहाँ रोड के किनारे ही ये काम हो रहा है।

यहाँ रोड के किनारे एक आदमी जिसने अपने आगे एक सफ़ेद और काला रंग का कपड़ा बिछाया हुआ है यहाँ बैठा हुआ दिखाई दे रहा है इस आदमी ने आगे कपड़े पर काफी सारी छोटी और बड़ी प्रकार मछलियां डाली हुई है।

बिल्डिंग के गेट के ऊपर नीले रंग से सदर हॉस्पिटल गोपाल गंज लिखा हुआ दिखाई दे रहा हे यहाँ हॉस्पिटल के आगे काफी सारी बाइक स्कूटिया और एक वाइट कलर की इनोवा भी खड़ी हुई दिखाई दे रही हे।

दुकान के बाहार भी दो टेबलें पड़ी दिखाई दे रहे हैं जिन टेबलो पर काफी सारी कॉपिया और काफी सारी किताबें रखी दिखाई दे रही है यहाँ कुर्सी पर दो आदमी भी बेठे हुए दिखाई दे रहे है।

यहां बिल्डिंग के आगे काफ़ी बड़ा सा ग्राउंड जिसमे काफी सारी बाइक और स्कुटिया खड़ी हुई दिख रही है ग्राउंड में काफी सारी घासे दिख रही है ग्राउंड के आगे जिस पर तीन आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहे है।